ये एक फोटो है रोड की--

ये फोटो एक बुक स्टाल की है जिस--

जिसमे से एक महिला है जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना है एक पुरुष है जिसने ब्लैक शर्ट --

ये फोटो एक रास्ते की है जिस --

और यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हुए दीवार--

और घासें भी हैं और पेड़ भी है।

और मस्जिद के साथ मे एक टॉवर है।

आस पास पेड़ हैं और मस्जिद सफ़ेद रंग की हैं उपर की खुम्मस उनके हरे रंग की हैं।

नदी है नदी पे बोट है पीछे पेड़ है।

और पे जो खम्भे है वो नीले रंग के है और ऊपर सफ़ेद रंग की बिल्डिंग बनी हुई है।

मौसम बहुत अच्छा है।